यह बहुत बड़ा कॉलेज है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। यह इस कॉलेज के बगल में बहुत बड़ा मैदान है।

टैक्टर ट्रक बस सब चीज का मोटरसाइकिल कार स्कूटर बस सब कुछ का ट्रक मिलता ह अ ट्रक का टायर मिलता है। यह बहुत बड़ा बाजार लग रहा है।

यह पूछताछ सेंटर है इसमे किसी व्यक्ति को कोई किसी भी प्रकार का परेशानी होता है तो उससे पूछा जाता है उसके परेशानी के बाड़े में और --

इसमें हमें प्रवेश निषेध दिखाया जा रहा है इस-इस हो के लोग प्रवेश करते हैं।

इसमें कई लोगों को भी दिखाया जा रहा है जो कि इस ओर होके प्रवेश करते है ये लोहा का या कोई भी वस्तु का बना होता है इस पर लिखा जाता है यह प्रवेश निषेध है ।

इसमें हाट मानसिकता रहता है बहुत खर्चा होता है सारा लुंडा सा।

जे.सी.बी. का काम बड़े-बड़े कार अ गाड़िया के लिया किया जाता है। यह इसका कार्य मिट्टी खोदने पा-पत्थर तोड़ने--

क्या कुछ कर सकता था । वो तो बहुत सारा नियमों का पैदा नही कर पाया।

जो काला कलर का है। उसमे एक ठु उसका बच्चा को भी दिखाई जानत है | उसके कान में एक ठु कनोसी है। भैंस को नथ दिया गया है। भैंस का नत्थी कर दिया --

यहाँ पे एक बहुत बड़ा फील्ड होना जरुरी है। ताकि बच्चे लो--